यहाँ पे मुझे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं और ये एक घूमने की जगह है और यहाँ बहुत ही सारे पेड़ --

और यहाँ पे मुझे एक इंसान दिख रहा है और यहाँ पे इस जगह पे बस स्‍टॉप है और यहाँ पे बस स्‍टेशन है और यहाँ से बस को --